ये एक मॉल है जहाँ पे बहोत सारी पेटी नई-नई टी शर्ट्स आई हैं जैसा की हम देख रहे हैं येलो कलर की है ब्लू है वाइट है रेड है पिंक --

स्ट्रिप है यह रेड कलर की पट्टी लगी हुई ताकि लाइन वाइज लाइन से सब अंदर जा सके कोई ऐसे ना जाये इसलिए अभी सुबह-सुबह का टाइम है तो भीड़ नहीं है।

और बगल में पू पू मतलब ईंटे लगी हुई है ये पुराने जमाने की लग रहे है और नीचे काफी सारी टाइल्स लगी हुई है।

यहाँ एक कार खड़ी है पीछे से बैक साइड सि कार दिखाई दे री है आपको जो कि काफी नयी न्यू लांच हुई है।

ये एक पहाड़ी इलाका है जो हमने जहाँ ऊपर से खड़े होके यहाँ पे क्लिप पिक्चर क्लिक करा है।